टेबल के चारों साइड बहोत सारी कुर्सियां रखी हुई है रूम का कलर चॉकलेटी पोता हुआ--

एक पीले कलर का खम्बा दिखाई दे रहा है और कुछ पेड़ पौधे नजर आ--

नीले कलर का आसमान भी दिखाई दे रहा--

रोड के उस साइड बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही--

और दुकान में बहोत सारी चीज रखी हुई हैं।

दो गाड़ियां खड़ी हुई है एक साइकिल खड़ी हुई है उसी के सामने एक बहोत बड़ा पेड़ लगा हुआ है उसके बगल में कुर्सी रखी--